यह एक फल मंडी है।

यह फूल कैण्ट पर स्थित है।

और इस खेत की जुताई किसानों द्वारा की जाती है।